शैडो भी मतलब आ रहा है और दोनों साइड बहुत सारी खिड़की लगी हुई हैं।

सामने में एक मिठाई की दूकान मतलब की स-स्नेकस बार लिखा हुआ है रेड कलर का |

लाइन लाइन टाइप से कुछ दिख रहा है वहां पे पेड़ लगे हुए हैं और सामने पहाड़ दिख रहा है जिस पे कि पूरा धूप आ रहा है अच्छे से।

सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर का कुछ दिख रहा है यहाँ पर पानी-पानी पूरा दिख रहा है यहाँ पर बहत सारे पत्थर हैं ।

और आप देख सकते है कि यहाँ पे कुछ आई थिंक कॉलेज मेडिकल कॉलेज में कुछ बताया जा रहा है यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं सामने एक टीचर बता रहे हैं और सामने एक टीचर खड़े हैं।

और यहाँ एक बैठने वाला बना हुआ है और उस साइड में स्कूटी लगी हुई है लेफ्ट साइड में वहीं पोस्टर है और सामने कुछ बंदे खड़े हैं।

सामने एक रेलवे स्टेशन दिख है जिसमें ट्रेन आ रही है। यहाँ आप देख सकते तीन लाईने बनी हुयी है जिसमें की बीच वाले आ रही है।

जहां पर दो नेट देख पा रहा हूँ इसके नीचे येलो कलर का फील्ड दिख रहा है इसपे छोटे-छोटे घास उगे हुए हैं और तीन वहां पर छोटे-छोटे उ उ छोटे-छोटे घर दिख रहे है यह एक चिल्ड्रन प्लेग्राउंड एक फील्ड दिख रहा है।

आप यहां पर देख पा रहे है यह एक लोकल पोखर है यह एक गांव का सीन है यहाँ पे एक पोखर था एक पोखर आगे यानि दो पोखर बीच में एक आर दिया हुआ है।

यह वेंटीलेटर कोल्हू शेप में बनी हुई है नीचे में जो है ये जो है रेलिंग दिख रही है

और राइट साइड में हमे दराज़ टाइप का दिख रहा है और लेफ्ट में कुछ एक फोटो टाइप का दिख रहा है पूरा दीवाल व्हाइट कलर का दिख रहा है राइट साइड में ऊपर में ए _सी भी लगा हुआ है।

सामने आप एक फील्ड देख पा रहे होंगे जिस के आगे आप देख पा रहे होंगे सुबह का सीन है सूरज उगा है उसके किरणे कैसे चारों तरफ फैल रही है और यहाँ आप देख पा रहे हैं बहुत सारे फील्ड लोग भी यहा पे फील्ड पे दोड़ रहे हैं ।